किराने के सामान की दूकान है अलमारी बनी हुई है।

ऑफिस है पूरा ऑफिस गुब्बारे से सजा हुआ है लाल पिले गुब्बारे है।

टेबुल कुर्सी लगी है कंप्यूटर रखा है।

गाड़िया चल रही हैं गाड़िया खड़ी हैं साइड मै ठेला लगा हुआ है।

कार रखी हुई है कार का सामने का टप्पर खुला हुआ है।